इस तस्वीर में हम एक नदी को देखने पा रहें हैं यह नदी बहुत ही सुन्दर है एवं इस नदी के ऊपर एक नाव तैर रही है यह नाव काफी बड़ी है एवं इस नाव पे बहुत से व्यक्ति सवार हैं।

इस तस्वीर में हम एक बहुत ही चौड़ा और बहुत ही लम्बा रास्ता देखने पा रहे है।

एवं यह सभी महिलाएं बिहार की सबसे प्रचलित पूजा छठ पूजा के लिए कतार में खड़ी हुई हैं।